इसमें गुलाब का फूल अड़हुल का फूल बड़े बड़े पेड़ सजावटी वाले पेड़ ये सब दिख रहे--

यह एक गार्डन है पीछे एक सफेद बिल्डिंग है उसके बगल में एक खंभा है।

एक सिस्टर खड़ी हुई है जो निरीक्षण कर रही हैं।

शीशे का वो बना हुआ है और एक ऑफिस का दृश्य है।

कूड़ा दान रखा हुआ है और एक मंदिर मस्जिद का दृश्य है ये।

एक रखा डेस्क है और नीचे फर्श है और ग्रे कलर की खिड़की है।

यह एक सिनेमा घर का दृश्य है। ऊपर बहुत ही अच्छी लाइटनिंग दी गई है। सफेद कलर लाइटनिंग है। नीचे फर्श चमक रही है।

एक दरवाजा लगा हुआ है जिसमें ताला लगा हुआ है।

कुर्सियां रखी हुई है कुछ पीले कलर कि लाल कलर कि।

और ये बहोत ही गंदा दिख रहा है पीछे कुछ पेड़ है और ये बहोत पुराना डैम है।

यह एक डेस्क है ये आइडिया सिम का ओपनिंग सेरिमनी दिखाया गया है।

कुछ गुब्बारे लगाए गए हैं सफेद अह लाल कलर के पीले कलर के।

यह एक चर्च है वह एक कुर्सी रखी हुई है जिस पे जेनिफर लिखा हुआ है।

पीछे एक पादरी साहब है। लाल गमछा डाले हुए हैं ऊपर से पीला कपड़ा--

कुछ पत्थर से बने हुए फर्श दिख रहा है।

भूरा कलर हो गया इसका बहुत पुराना कलर दिख रहा है।

ये एक बहोत बड़ा आलिशान घर है इसमें लाल पिलर लगाए गए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है भारत पेट्रोलियम करके।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जहां पे एक काला पैंट और सफेद शर्ट पहना हुआ आदमी कुछ समान लेने के लिए आया हुआ है।

यह एक स्कूल का दृश्य लग रहा है एक बहोत बड़ा सा पेड़ है।

कुछ लोहे दिख रहे हैं लोहे के राड एक बहुत बड़ा गेट दिख रहा है आगे।

यहां पे एक अह अमूल दूध की गाड़ी दिख रही है।

इसमें कुछ लड़कियों के भी कपड़े हैं कुछ व्हाइट टी शर्ट दिख रहा है कुछ लाल टी शर्ट दिख रहा है।

पोस्ट ऑफिस जैसा लग रहा है और लाल लाल बिल्डिंग और सफेद बिल्डिंग है।

इधर कुछ लगा हुआ है कमरों में दरवाजा लाल कलर से है।

जो नंबर है यू_पी बत्तीस ई_टी छाछट निन्यानबे है।

यह किसी झील का दृश्य एक अंकल बैठे हुए सदरी में --

पीछे एक बहुत घना जंगल है और एक ता बहुत बड़ा झील है जिसमें पानी भरा हुआ--

कुछ खाने पीने की भी चीजें हैं डेली यूज वाली आइसक्रीम के कुछ डिब्बे दिख रहे हैं।

कुछ सफेद गुलदस्ते हैं कुछ कलर रंग अह रंग बिरंगे गुलदस्ते हैं और--